भीतो के नाम से जाना जाता है यहां पे ऊपर कुछ टेडी लगे हैं और--

और पीछे अलमीरा पे बहोत सारे मिठाई के डिब्बे हैं और बहुत ही किसिम अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयां रखी गई हैं।